रूम के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कुछ मोटर साइकिल फोटों लगा हुआ हैं।

दुकान में एक बुद्ध जी का फोटो लगा हुआ है और उसमें कुछ सामान रखा हुआ है फूल एण्ड डेकोरेशन का सामान है।

इस चित्र में एक पीली बिल्डिंग बनी हुई है या तो वह स्कूल है या कॉलेज है बिल्डिंग के आस-पास क्छ पेड़ खड़े हुए हैं।

नीचे छता रखा हुआ है एक आदमी बैठा हुआ है जो कुछ कर रहा है बिल्डिंग के सामने एक टैक्टर रखा हुआ है।

यह एक पार्क है पार्क में कुछ पेड़ खड़े हुए हैं एक दिवार है पार्क के बगल से एक सड़क गई हुई है।

एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उसी के बगल से कुछ नारियल के पेड़ खड़े हैं एक मोटी दिवाल है।

यह एक जंगल है एक छत के नीचे तीन हाथी बंधे हुए है आस-पास हरी घास खड़ी हुई है एक पत्थर रखा हुआ है।

छत के ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए है एक पानी की टंकी बनी हुई है और आस-पास बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं।

यह एक दफ्तर है दफ्तर में कुछ अलमारि याँ रखी हुई हैं अलमारि यों में कुछ कागजी सामान रखा हुआ है।

यह एक झरना है उसके बीचों-बीच से एक पानी का झरना निकल रहा है आस-पास कुछ बड़े-बड़े पत्थर हैं।

पानी बहुत तेजी से बह रहा है ये एक बहुत शानदार दृश्य है।

यह एक परिसर है इसमें कुछ विद्यार्थी घूम रहे हैं कुछ सीढियों से नीचे उतर रहे हैं एक गेट के बाहर एक मैडम खड़ी हुई है जिनके पास आई डी कार्ड है।

विद्यार्थियों की परीक्षाऐं पर दिख रही हैं एक मैडम हाथ में फोन लिए हुए हैं एक विद्यार्थी बात कर रहा है।

टिन शेड लगी हुई है उसमें कुछ लाइटें जल रही है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है आस-पास बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

एक छोटी-सी बिल्डिंग दिख रही है उसी के पास एक टावर लगा हुआ है।

यह एक पहाड़ पे है जिसके चारो तरफ बाउंड्ररी है कुछ लोहे के जाले लगे हैं ।

इसमें एक व्यक्ति हाथ मुड़कर खड़ा हुआ है इसमे--

मोबाइल चला रहा है आस-पास कुछ कुर्सियाँ रखी हुई है दुकान के आस-पास कुछ पोस्टर लगे हुए--

चारो तरफ वह व्यक्ति बैठा है वह पहाड़ों की ओर देख रहा है।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

बगल से कुछ गमले रखे हुए हैं उसी होटल के बाहर कुछ बैनर लगे हुए अं लगे हुए हैं।

यह एक नदी या तालाब है जिसके बगल से कुछ घर बने हुए हैं।

यहाँ लाइटें जल रही हैं बहुत सारी आस-पास पेड़ खड़े हुए हैं खम्भे खड़े हुए हैं।

इस क्षेत्र में एक ग्राउंड है ग्राउंड के आस-पास दो बिल्डिंग है।

सूरन निकलता है जिसकी रोशनी सीधे ग्राउंड पर पड़ रही है आस-पास कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक गौशाला है जिसमें दो गाय बंधी हैं एक व्यक्ति गाय को कुछ खिला रहा है।

इस क्षेत्र में कुछ एक मंदिर दिख रहा है मंदिर के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है या चल रहा है आस-पास कुछ--

इसमें एक सड़क है सड़क से कुछ गायें निकल रही है आस-पास एक जंगल है।

इसमें बहुत सारे तेड़ खड़े हुए हैं जो यह सड़क है वह कच्ची सड़क है लाल गिट्टी की--

यह एक प्ले -ग्राउंड है जिसमे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

एक व्यक्ति ग्राउंड में घूम रहा है उसी के बगल से एक लोहे का खम्भा खड़ा हुआ है एक टिन शेड की--

इस क्षेत्र में मुझे एक स्कूप परिसर है जिसमें कुछ बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं।

वह आपस में कुछ बात-चीत कर रहे हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यह एक नाई की दुकान है नाई एक बालक के बाल कट रहा है जिसके दोनो तरफ शीशा लगा हुआ है।

आपस कुछ बात-चीत कर रहे है एक व्यक्ति फोन पर बातें कर रहा है।

फोन के पास में ही एक व्यक्ति काम कर रहा है उसके बगल से एक कुर्सी रखी हुई है और पास में ही ए_सी लगा हुआ है।

यह एक हॉल है हॉल में बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं एक व्यक्ति जो मशीन से कुछ बच्चों को सिखा रहा है।

यह एक तालाब है तालाब के पास एक मोटरसाइकिल रखी हुई है।

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ा स्तंभ दिख रहा है स्तंभ के बाहर एक--

मेला लगा हुआ हैएक व्यक्ति साइिकल से निकल रहा है स्तंभ केे आस-पास कुछ पेड़ खड़े हुए हैं।

गई है ऊपर की तरफ दुकान के बाहर कुछ सामान रखा हुआ है।

यह एक रेलवे टेशन है रेलवे टेशन के बाहर--

ट्रेन रूकी हुई है कुछ व्यक्ति ट्रे-ट्रेन के बाहर खड़े हुए हैं।

टहल रहे हैं कुुछ बैठे हुए कुछ खड़े हुए हैं कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं।

पास ही मे एक छोटी-सी दुकान है कुछ लाइटें जल रही हैं।

कोको-कोला शरीर से कुछ दिखाल रहा है इसके ऊपर सेकंड फ्लोर पर एक एडिक नाम से शॉप है।

कुछ कारीगर काम कर रहे है घर के आ--

बहोत सारे लाइटे है ए_सी फैन लगे हुए हैं।

यह एक शॉप है शॉप में कुछ लड़के काम कर रहे हैं।

के बाहर कुछ पेड़ खड़े हुए हैं।

यह एक शॉप है फास्ट फूड के नाम से है।

यह एक सब्जी की शॉप है जिसमें कुछ व्यक्ति सब्जी बेच रहे हैं कुछ लेने वाले कद्दू उठा कर देख रहे हैं।